और कैप कितना अच्छा लगा रखा उस लड़के ने चश्मा कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर।

ये मॉल है। मॉल कितना बढ़िया है। यहाँ काफी सारा सामान मिलता है मॉल में।

ये पूजा करने आए हैं यह स्नान करेंगे इस तालाब में यह तालाब बहुत बड़ा है यह गंगा जीव है।

और ये बच्चे एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इससे हमारा शरीर स्वस्थ और बढ़िया रहता है हमें कोई थकन महसूस नहीं होती इस एक्सरसाइज से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है।

तो कित्ता मज़ा आयगा झूलने में। हम भी झूलते इस झूले पे।

हर तरह की चीजें मिलती हैं।

ये आदमी कितना स्मार्ट लग रहा है इस सैलून की फैशनलिटी कितनी अच्छी है कितनी सारी बढ़िया-बढ़िया मशीनें हैं यहाँ कितनी साफ सफाई है सैलून में।

और इस जंगल में कितने सारे हिरण कितने सुंदर- सुंदर हिरण है।

ये हिरन कितने मस्त लग रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हिरन।